इस तस्वीर में हमें बहोत सारे नेगलेस सेट दिखाई दे रहे हैं.

सफेद रंग की हैं और उसकी खिड़कियां खुली हुईं हैं।

तस्वीर के अंदर हमें मालाएं टंगी दिखाई दे रही हैं.

हमें तस्वीर के अंदर दो आदमी दिखाई दे रहे--

और बहोत सारे कपड़े जमे रखे हैं.

अ फ्लावर पॉट रखा है उसमें पीले पीले फूल हैं।

हमें फूल भी लगे दिखाई दे रहे हैं.

इस तस्वीर में हरी-हरी जालियां लगी हैं.

और खिड़कियाँ और जालियाँ नज़र आ रही हैं।

इस तस्वीर में हमें जमीन में टाइल्स दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में हमें भीड़ दिखाई दे रही है--.

तस्वीर में हमें दिखाई दे रही है एक दीवार पर अअ लगा हुआ है बोर्ड --

और एक बड़ी सी हमें अ--

लाल लाल रोशनी है और सफेद लाइटें भी लगी हैं.

बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं उन पर लाइटें लगी हैं.--

तस्वीर में हमें आदमी दिखाई दे रहे हैं अ कच्ची सड़क कच्चा रोड है.

गाड़ियां हैं और हमें सामने बोर्ड लगा नीला दिख रहा है.

और थेले टंगे नजर आ रहे हैं हमें--

गाड़ियां खड़ी हुई हैं और आदमी भी खड़े हैं.

अ दरवाजे और खिड़कियां नजर आ रही हैं.

दूर हमें नजर आ रही है पहाड़ी है.

अ बाहर अंधेरा है और सामने हमें रोशनी नजर आ रही है.

तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है आदमी खेल रहे हैं।

ढोल बजाते हुए आदमी हमें दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े ढोल लिए हुए हैं।

नीचे नीला नीला कारपेट अ कालीन बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

हमें श्री लक्ष्मी नारायण देव मंदिर का नाम दिखाई दे रहा है.

इस तस्वीर में हमें फिश मार्केट दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं हमें.--

अअ गाड़ियां हमें बहोत सारी नजर आ रही हैं.

हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी दिखाई दे रही है।

और फूल भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं.

एक बोर्ड लगा है बड़ा सा माउंट हॉस्पिटल लिखा है.

तस्वीर के अंदर हरी-हरी घास हरे-हरे पेड़ लगे हैं.

बैंचें रखी हुई हमें पत्थर की दिखाई दे रही हैं।

गुलाबी और नीले रंग का नीचे कारपेट पिछा है.

एक निली अलमारी है और एक अलमारी और रखी है लोहे की--

हमें तस्वीरें लगी और दिखाई दे रही हैं.

हमें नजर आ रही है बिल्डिंग है सफेद बड़ी सी--

और हमें रेलिंग बनी हुई नजर आ रही है.